शायद ये कोई वाटर फॉल है इसमें बहुत सारे पत्थर हैं।

ये एक अ खराब हुआ कार है।

अह इसको सायद ठीक कर रहे हैं।

ऊपर ग्रीन कलर का मैट लगा हुआ है।

यहां पे टेबल के ऊपर ब्लू कलर का कपड़ा है।

एक इंसान है और ये एक लेडिस हैं।

और ये ग्रीन कलर का साड़ी पहने हुए हैं।

ऐसा लग रहा है कि एक ए_टी_एम है।

और एक कैंडल के नीचे चिड़िया है।

एक व्यक्ति के बीच में एक रस्ता है।

ऊपर से लाइट जल रहा है और साइड में व्हाइट कलर का--